ये बोहोत ही सुंदर और खूबसूरत लग रहे हैं और ये अंदर बहोत ही अच्छे से है और यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ा करते हैं जुम्मे के और पांचों --

बसे भी खड़ी हैं और ये स्कूल बोहोत ही बड़ा है और यहाँ पर लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते हैं और ये स्कूल बोहोत बड़ा है।

जो कि बोहोत ही अच्छा दिख दिखता है और यहां पर बोहोत ही अच्छे से इलाज होता है जो कि बोहोत ही अच्छा है और यह हॉस्पिटल बोहोत बढ़ --